और हड़ी भड़ी जगह है एयरपो एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड होने वाला है।

पी_सी ऑफिस है सब चेयर खाली पड़ा हुआ है और एक पानी का बॉटल रखा हुआ है।

ऊपड़ बादल छाए हुए है अच्छे सुंदर से प्यार से दिख रहे--

एक लड़का खड़ा हुआ है बाइक में कितनी सारी सामान लिया हुआ है।

मस्त प्यारा सा दिख रहा है स्टैचू और गोल्डन ब्लैक ब्लैक कॉम्बिशन किया हुआ है।

ये भी गार्डन है बेंच है सामने बड़ी सी बिल्डिंग है।

और शायद सिम के लिए आए हुए हैं।

झाड़ लगी हुई है अंकल आंटी ने पोज दिया है फोटो क्लिक करवाने के लिए।

पानी की लहरे बहोत बड़ी बड़ी आ रही हैं।

काफी सारा प्यारा सा सुंदर सा नजारा है। बहोत बड़ी है पानी की लहरे--

सुनसान है एक साइड में है काम करना कर रहा है।

और आस पास में कोई बड़ी सी सुंद--

मेडिकल शॉप है काफी बड़ी बड़ी दुकान है बहोत सारे समान रखे हुए शैंपू रखा हुआ--

कितनी बड़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन रखे हुए लेडिज वेयर में काफी बड़ा सा--

में काफी बड़ी है।

कितनी सारी बसें आ रही है।

गार्डन भी है ग्री हरी हरी सब दिख रही है।

पे आस दो अंकल और आंटी एक बैठे कुछ खाने के लिए--